और पीछे पहाड़ भी है।

पीछे पहाड़ों का चित्र देखते हुए काफी अच्छा लगता है।

ये किसी चर्च का फोटो या चित्र है।

कुछ व्यक्ति खड़े हैं और कुछ बच्चों के गाड़ियां और अपना शॉपिंग का एरिया दिख रहा है जो कि सामान बेचने की जगह होती है।

ये किसी मारुति सुजुकी अरेना का शोरूम दिख रहा है।

इसमें कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं।

ये कोई ऑफिस जैसी जगह है।

कुछ हेलमेट और कुछ फाइलें भी रखी हुई हैं।

दोपहिया वाहन भी खड़ा हुआ है।

ये डाइनिंग टेबल घर की है।

सीलिंग भी लगी हुई है घर में फैन भी लगा हुआ है।

बुक मार्केट अमीनाबाद लखनऊ जिसके बाहर कुछ दो तीन लोग खड़े हुए हैं।

यहाँ पे कुछ योगा के इक्विपमेंट्स और जिम के इक्विपमेंट रखे हुए हैं।

कोई व्यक्ति कॉफी पकड़े हुए हैं और--

ये कोई म्यूजिक वाले लोग हैं जो शायद कत्थक वगैरा गाते हैं।

ये किसी मेट्रो स्टेशन या एयरपोर्ट का चित्र दिखाई दे रहा है।

पीछे कुछ बच्चे और व व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है।

जिसपे फ्रेशर्स लिखा हुआ है।

अ साइड में गमले भी रखे हुए हैं।

यह बिल्डिंग है जिस पे सुदुइ लिखा हुआ है।

और एक व्यक्ति भी बैठा हुआ है।

और टी_वी सेक्शन भी लगा हुआ है।

और एक व्यक्ति बैटिंग कर रहा है एक बॉलिंग कर--

और लाल कलर की बैक लाइट लगी हुई है और पीछा शीशा ब्लैक है।